यहां पे बैंक ऑफ़ बड़ोदरा है।

जिसके नीचे शेटर और चैन गेट लगा हुआ है।

गेट द्वारा एक महिला अंदर जा रही है।

उसके सामने दो बाइक भी खड़े हैं।

यहां पे एक छोटा सा--

ऐक्सिस बैंक लिखा हुआ है।

जिसमें ए_टी_एम के अंदर काफी सारे व्यक्ति हैं।

उस टेबुल पर काफी सारे कॉपी किताब भी रखे हुए हैं।

यहां पे एक पार्क है जिसके चारो ओर से वाइट कलर का बाउंड्री दीया हुआ है।

फूल से सजाया हुआ है।

अच्छा तराश से सजाया गया है।

यहां पे एक स्कूल है।

एक वैन भी लगा हुआ है।

और उसके बगल मे एक पोस्टल भी लगाया हुआ है।

वहां पे एक रोड भी निकला हुआ है।

यह एक मछली है।

इस मछली का मुंह पर दो रोवां टाइप के निकला हुआ है और मछली के पोछ--

यहां एक मैदान है।

यहां एक गणेश सीडस सेंटर --

जो रेड कलर का लोहा का दरवाजा है।

यहां पे एक जिम घर है।

और वह एक व्यक्ति कुछ जिम कर रहा है और एक व्यक्ति रनिंग पर खड़ा है और एक रनिंग अभी--

जिसके अंदर दो हिरन हैं।

दृश्य में एक व्यक्ति ब्लॉक की ओर जा रहा है एक व्यक्ति--

बगल में एक बड़ा सा छाता लगा हुआ है।

दवा दुकान है जिसमे--

और एक एल_जी टी_वी भी लगा हुआ है।

यहां पे एक कपड़ा का दुकान है जिसमें लिखा हुआ है शशिकांत ट्रेजर्श ।